और ये बिल्डिंग पीले रंग की दिखाई पड़ रही है सामने एंट्रेंस के पास एक खिड़की है।

इस फोटो में एक सायकल का दुकान दिखाई पड़ रहा है जहां काफी खूबसूरत रंगबिरंगे सायकल रखे हुए हैं।

प्लेट में चिकन लॉलीपॉप अल्मुनियम फाइल से लपेटा हुआ है।

इस फोटो में एक दुकान दिख रहे हैं दुकान के बाहर फन एंड फूड लिखा हुआ है।

और उसके पूरब साइड में एक व्यक्ति काउंटर पर बैठा हुआ है।

फोटो में एक मंदिर का दृश्य है यहां पे अंदर एक सामूहिक विवाह हो रहा है।

ए_सी भी दिखाई पड़ रहे हैं दीवार पे कुछ पोस्टर स्टिकर चिपके हुए हैं स्विगी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

सामने खिड़की है जिसपे लाल और काले रंग का पर्दा लगा हुआ है।

इस फोटो में एक लड़का अपने हाथ में मोबाइल लेके सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने हरे रंग का टी शर्ट पहने हुआ है।

कुछ लोग हाथ में लोटा लिए बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक बोट दिखाई पड़ रही है।

इसके पे स्टेज बना हुआ स्टेज के पीछे एक बैनर है बैनर पे फ्रेशर्स लिखा हुआ है।

यहां पे दो व्यक्ति सोफे पे बैठे हुए हैं एक साउंड बॉक्स है स्टेज पे प्लास्टिक की चेयर है।

ये अंडर कॉन्ट्रेक्शन घर का--

फोटो में कन्सक्शन साइट का दृश्य है जहां खाली प्लॉट पर कुछ गड्ढे बनाए हुए हैं।

काफी व्यक्ति और भी दिखाई पड़ रहे हैं पीके का ढेर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

वहां भी एक व्यक्ति बनियान में खड़ा है पीछे की तरफ काफी मकान भी दिखाई पड़ रहे हैं जो सफेद रंग के हैं।

एक तालाब दिख रहे हैं जो मटमैले रंग का है।

ऊपर भी कुछ बना हुआ है कंस्ट्रक्शन जहां कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

अंदर काफी चार पहिया वाहन लगे हुए हैं।